यह तस्वीर में एक गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही--

वे साइड में एक मनी प्लांट नजर आ रहा है यहां पर दो रंग की कैंडल दिखाई दे रही हैं।

यह तस्वीर पहाड़ों की नजर आ रही है।

बोर्ड दिखाई दे रहा है वे यहां पर पीछे पहाड़ भी नजर आ रहा है।

कार रेट रिफिलिंग पासपोर्ट पैनकार्ड की दुकान नजर आ रही है।

यहां पर लाल रंग का गेट दिखाई दे रहा है।

वै यह इसमें एक तार भी नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक सुनार की दुकान की नजर आ रही है।

और यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति नीचे बैठा दिखाई दे रहा है।

यहां पर वेटर ने काले और संतरी कपड़े पहने हैं।

सोफे के बीच में एक छेद नजर आ रहा है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक कार दिखाई दे रही है व बीच में एक कुर्सी नजर आ रही है।

बहोत सारे भारतीय झंडे भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां बहोत सारी केबल भी नजर आ रही है।

पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहां बच्चे मास्क लगा कर--

राव पोल्ट्री फार्म का एक पोस्टर भी नजर आ रहा हैं।

वे मोबाइल नंबर भी क्रेन पर लिखे हुए--

यहां काले रंग का गेट भी नजर आ रहा है।